यहाँ पे एक बहोत बड़ा मॉल बन है जो की बहुत ही बड़ा है और उसके ऊपर मे बांस की कुछ छल्ली लगायी गयी है और उसके किनारे में बहोत सारे रूम भी लगे हुए है। .

और उनमें से एक कार के पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ है और पेड़-पौधे भी किनारे सब में दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े और कुछ बोलोरो सब भी एक किनारे रखे हुए प्रतीत हो रहे है।

और उस मैदान के पीछे में बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है और बिल्डिंग सब भी बहोत बड़े-बड़े दिख रहे है। .

यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो की बहोत ही बड़ा है।

उसके बाहर में कुछ--

एक सीढ़ी के ऊपर में कोई दो बच्ची ऊपर में चढ़े हुए नज़र आ रही है जो कि एक बच्ची किसी को देख रही है और एक--

कुछ कुर्सी सब को भी रखे हुए है डाइनिंग टेबल को भी रख दिए गए है।